एक बड़ा सा टावर दिखाई दे रहा है और खुला नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

एक कुर्सी दिखाई दे रही है बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर आप देख सकते हैं कि यह एक स्कूल है।